इस दृश्य में आपको एक बड़ा सा घर नजर आ रहा होगा जिसपे लिखा है जेंट्स थानव--

पेड़-पौधे नीचे हरी-हरी घास और ऊपर एक खुला आसमान से आ रहा है।

यहां पर खान की बहोत सारी चीजें नजर आ रही है जैसे कुरकुरे चिप्स बिंगो चॉकलेट जूस ।

और एक ऊंची सी लकड़ी सफेद रंग की इमारत--

और पीछे नीले नीले आसमान नजर--